और एक व्यक्ति इन सरियो से नाफ रहा है और एक व्यक्ति इनमें चुना वगैरह डाल के एक सा कर रहा है और इस घर में प्लाटिंग वगैरह हो रही है।

ये एग - एक घर का चित्र दिखाई दे रहा है और इस घर के छत में कई सारे मजदूर काम कर रहे हैं ।

कुछ करने आ रहे है और पोस्ट ऑफिस के बगल मे कई सारे गाड़ी वगेरा खड़ी हुई है और पोस्ट बगल मे एक चैनल --

ये एक एक सड़क का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमे इस घर के नीचे इत दो रिक्शा वगैरह खड़े हुए है और एक महिला ऊपर से इस व्यक्ति को आवाज़ दे रही है।

ये एक लॉज का चित्र दिखाई दे रहा है और इस लॉज में कई सारे सजावट करवाई गयी है।

और इस लॉज के बाहर एक व्यक्ति इस लॉज को सजा हुआ देख रहा है और इस लॉज में कई सारे लोग अंदर खाना पीना खा रहे हैं।

उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के उस साईड पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ --

और इस बैंक के अगल बगल कई सारे लोग खड़े हुए हैं।

सामान लिए खड़ा है और एक व्यक्ति अपने कान में किसी से बात वगैरह कर रहा--

और इस व्यक्ति की एक व्यक्ति इस व्यक्ति के दाढ़ी वगैरह बना रहा है और इस व्यक्ति के अगल-बगल कई सारे काँच वगैरह लगे हैं और इस व्यक्ति --

यह रेलवे प्लेटफॉर्म उरई का एक नंबर प्लेटफार्म और दो नंबर प्लेटफार्म है जहा पर चार रेल कि पटरिया बिछी हुई है।

जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है यहाँ पर किसी नदी का चित्रण है।

और यहां प्लेटफार्म थोड़ा सा छोटा है जहां पर बंदर भी बैठे हुए है पटरियों पर।